रेलवे स्टेशन यह रेलवे स्टेशन है।

लोग आएंगे। इसको देखेंगे। खूबसूरती के लिए ये सारी चीजें की गई हैं।

गईयों को रखा जाता है जो इधर-उधर गईया --

यह बस स्टेशन है यहां से बसें मिलती हैं हर जगह जाने के लिए।

यह कोई बहुत ही रमड़ी जगह है यहां पे गुफा बना हुआ है।

यह लग रहा है कि मुरीघाट का --